जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि दिन का वक्त है और सामने एक बिल्डिंग है इसमें हरे कलर की और वाइट कलर की पेंट की हुई है।

मंदिर में बहोत सारे झंडे लगे हैं और एक पिलर दिख रहा है जो लाल रंग का है उसके सामने एक सफेद कलर की दीवार है।

सामने एक स्कूटी खड़ी है स्कूटी सफेद और लाल रंग की है।